नीचे पेड़ दिख रहा है कार दिख रही है एक औरत दिख रही है बाइक दिख रही हैं।

ये एक बड़ा सा चर्च दिख रहा हैं। लोग के हातो में कागज लिए हुए है।

पूजा कर रहे है एक बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है जिसपे बहुत लोग दिख रहे है पहाड़ पेड़ दिख रहे है।

इस चित्र मे एक अह रास्ता दिख रहा है जहाँ पर ऑटो दिख रहे है पेड़ लगे हुए है आसमान दिख रहा है।

पानी बेह रहा है दिख रही है पेड़ दिख रहे है।

इस चित्र मे कुछ लड़के दिख रहे है जो दुकाने खरीद रहे है ये एक किताबों की दुकान है।

चित्र मे चट्टान की पहाड दिख रही है जहा पर एक लड़का एक लड़की का फोटो ले रहा है बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे है आ बड़े से पत्थर दिखाई दे रहे है छोटे छोटे पत्थर दिख रहे है।